ये लग रहा है जो नदी जैसा है पार्क जैसा बनाया गया है उसके पीछे--

ये देखिये मुर्गा है और एक मुर्गा है और दो मुर्गी है और इसके बगल में दो गमले में फुल लगा हुआ है। और--

काफी अच्छा लग रहा है और पन्नी है उधर--